येहे है फोटो एक ब्रिज की दिखाई पड़ रही है ब्रिज तो खाली है |

इस आइसक्रीम पार्लर के सामने कुछ लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं।

और कुछ लोग शायद खरीदार हैं जो बेचने वाले के सामने खड़े है।